यहां हम देख सकते हैं यह--

इसके पास हम देख पा रहे हैं एक और यहां पे शॉप खुली हुई है।

यहां हम देख सकते हैं यहां पे हमे रोड दिखाई दे रहा है उसके अंदर हम देख पा रहे हैं एक बड़ा सारा --

स्कूल है और उसके बाहर यहां पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं कुछ बाइक पार्किंग की गई है अंदर।

आप देख सकते हैं शिवजी भी यहां हैं हनुमान जी भी है माता भी हैं।

यहां हम देख पा रहे इस यहां पे स्मार्ट बाजार है इसमें सामान देख सकते हैं काफी सारा हमें दिखाई दे रहा है।

यहां हम देख सकते हैं यहां पे काम चल रहा है आप खुद देख सकते हैं काफी सारे मिस्त्री यहां काम कर रहे हैं सब ने येलो कलर की कैप यहां लगाई हुई है।

यहां पे सिटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं काफी प्यारी चेयर और टेबल के साथ यहां पे और एक अंकल यहां पे बाहर सफाई कर रहे हैं।

यहां हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हॉल है हॉल में आप देख सकते हैं बेंच लगी हुई है सामने एक बहुत सारा बड़ा सारा बोर्ड है।

यहां हम देख सकते हैं यहां पे आप देख लीजिए सोच स्वच्छता का अभियान का यहां पे लिखा हुआ है।

यहां पे ट्रैक्टर है उसमें एक फोटो लगाई गई है और यहां पे पंडित जी बैठे हैं व्हाइट कलर की ड्रेस में नीचे काफी सारी पब्लिक यहां खड़ी है।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन है गार्डन में काफी अच्छी हरियाली है।

यहां आप देख सकते हैं यहां एक मंदिर है मंदिर के बाहर कुछ घंटियां लगी हुई हैं यहां एक अंकल बैठे हैं जिनका चेहरा छुपाया गया है।

होटल में हम देख पा रहे हैं काफी प्यारी देख सकते हैं फूड लिखा हुआ है लाइटों से सजा हुआ यहां पे सोफे और यहां पे टेबल लगाई गई हैं।

काफी सारी चीजे यहा है आप खुद देख सकते है।

पेट्रोल पंप पर हम देख पा रहे काफी सारी फोर व्हीलर हमें देखने को मिल रही है आसपास कुछ पेड़ हमें देखने को मिल रहे हैं आप देख सकते हैं।

स्कूल के बाहर आप सकते हैं कि ये कच्चा पक्का सा गार्डन है गार्डन के अंदर बहुत सारी बाइक पार्क की गई हैं यहां ऊपर हम देख पा रहे दो भैया खड़े हैं।

बीड़ी और यहां पे आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक पानी की बॉटल सभी हमें दिखाई दे रही है काफी तरह की वैरायटी है यहां पे काफी सारा सामान है आप खुद देख सकते हैं।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पर एक टेरिस बना हुआ है उसके ऊपर हम देख सकते हैं सिटिंग के लिए कुछ चेयर है।

और कुछ टेबल है और यहां छोटे छोटे जो पौधे हैं ना वो बहुत सुंदर लग रहे हैं और हम यहां से देख पा रहे हैं ऊपर का नजारा कितना अच्छा लग रहा --